एक सफेद कलर से पुती हुई दीवार भीं वहां पर दिख रहीं हैं।

वहां पर कहीं सारे अलग अलग कलर के गुब्बारे भी दिख रहे हैं।

दीवार पर ये बड़ा सा फोटो फ्रेम दिख रहा हैं।

आस पास में कई सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

पास ही में कई सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

आस पास में कई सारे पेड़ पौधे भी यहां दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक बड़ी सी रेल की पटरी दिखाई दे रही है।

साइड में एक बड़ा सा मैदान भी दिखाई दे रहा है।

बहार की साइड में एक गाड़ी खड़ी हुई यहा पर दिखाई दे रही है।